एह बस ए एमा सवारी बैयठें दू ठी बस हावे ए बबा चढ़थे अउ अउ आथें एती ले हमु गे रेहेन।

मस्त है बस पीला कलर मे अउ मस्त हैं एमा के ड्राइवर ह इँहा पढ़े जाथन इमा स्कूल मस्त दिखत हैं स बस ह इँहा गे रेहेन हम।

केरा पान से सजाए हुए है अच्छा दिख रहा है।

इंग्लिश मीडियम स्कूल है यहाँ हमलोग पढ़ते है और यहाँ बहुत अच्छा पढ़ाई होता हैं।

गर्ल गर्ल लोग के लिए कपड़े मिलते है यहाँ पे अच्छे-अच्छे हर प्रकार का मिलते है यहाँ पे कपड़ा --

पैर में लगाने वाला हर प्रकार का क्रिकेट का बैट मिलता हैं टैनी बॉल टैनिस गेंद विक्की बॉल हर प्रकार का गेंद मिलता हैं।

फुटबॉल का सामान मिलता है फुटबॉल के लिए कपड़ा जूता हर प्रकार का मिलता--